और ये लोग यहां पे हाथ मुंह भी धोते हैं और ये बहुत ही धार्मिक स्थल है और ऐसा सेम जगह आपको गंगा में भी देखने को मिलेगी गंगा नदी में जहां पे लोग नहाते हैं।

देखने की जगह देखने को मिलेगी और आपके घर के पास भी एक दुकान आपको आसान से देखने को मिल जाएगी।

और ये अग्रवाल स्टोर फेमस है अपनी मिठाइयों के लिए और जो घर की चीजें होती हैं खाने पीने की वो सारी चीजें और ये बहुत ही सुंदर है दिखने में --

दिखने में बहुत साफ है और सुंदर है और ये साइकिल भी बहुत ही अच्छी लग रही है काली रंग में ।

यह फोटो एनुअल फंक्शन की फोटो है जो कि स्कूल में होता है और यह बच्चे आपको सामने की तरफ दिख रहे होंगे इन्होंने कोई नृत्य परफॉर्म किया है इसमें।

और आपको आम तौर पर देखने को मिल जाता है और काफी सुंदर नेते इन्होंने जो है वो करा है ।

जैसे कि चिप्स दूध दही और चिप्स के पैकेट और भी खाने की चीजे ।

यहां पर जो बच्चे जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और घर के जो मेंबर्स होते हैं वो भी यहां पर आते हैं वॉक करने के लिए खेलने के लिए ।

और इसके सामने ही गेट है जहां से फोटो ली है।

जो कि एक कूड़ा उठाती है और एक किसी की पर्सनल कार है।

ये फोटो में दिख रहा है एक बड़ी सी सफेद कलर की बिल्डिंग है जो कि बहुत सुंदर लग रही है देखने --

ये फोटो एक रूम से ली गई है जिसके सामने आप देख सकते हैं टेबल और कुर्सी रखी है ।

और इसके ऊपर वॉल पे चिमनी भी है।

यह फोटो एक पार्क की फोटो है जहां पर आपको और पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और यहां पर एक छोटी सी नदी भी है ।

और ये लेंटर पूरा हो रहा है उसके सामने पेड़ भी हैं बड़े-बडे --